यह स्टेशन के ऊपर से एक ओवरब्रिज जा रहा है।

ये सीमेंट बनाने की मशीन लगी हुई है जिसमें दो आदमी उसमें सीमेंट डालते जा रहे हैं।

एक बी_पी की मशीन रखी हुई है। तो एक डॉक्टर का हेडफोन रखा हुआ है।

हॉल में पर्पल कलर के पर्दे लगे हुए हैं।

कुछ म्यूजिक बजाने वाले भी बैठे हुए हैं जो म्यूजिक बजाएंगे।

इसमें कुछ लोग तो बाहर प्रतीक्षा कर रहे अपनी बारी की--

ये एक वाटर कूलर रखा हुआ है जो दुकानदार--

चेयर्स और पंडाल को हेयर एंड और पीले रंग से--

इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि ये किसी इमारत की छत पड़ रही है।

जिसमें मजदूर लोग बहोत ही कड़ी धूप में भी मेहनत के साथ इस इमारत की छत को डाल रहे हैं।

इसे छोटी सी चाबी दे कर साथ में इसका उत्साह बढ़ा रहा है ये औरत काफी खुश है अपने लिए इस गाड़ी को खरीद कर--

पीछे एक दरवाजा है जिसके ऊपर आधार सेवा केंद्र का चिन्ह लगा हुआ है।

चांदी की प्लेटें रखी हुई है काउंटर पर दुकानदार बैठा हुआ है जो हिसाब कर रहा है।

जिस में जाने के लिए थोड़ी और सीढ़ियां बनी हुई हैं।

दुकान की तस्वीर है जिसका नाम वी_आई_पी सीट कवर सेंटर है।

ये कोई मिठाई की दुकान है हलवाई की दुकान जिसकी बहोत तरह तरह की मिठाइयां मिल रही हैं।

इसके सामने केले संतरे अंगूर सब रखे हुए हैं और सब्जियों में इसके पास पत्ता गोभी रखी हुई है।

पीछे एक बहोत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें बहोत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं।